अ प्रतीत हो रही है यहाँ फैक्ट्री घी और तेल की नजर आ रही है जिसमें बड़े-बड़े बॉक्सेस --

इसके सामने बहोत ऊँची-ऊँची पहाड़ियां नजर आ रही है और यहाँ कुछ --

जैसे की आप देख सकते है इमेज में बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा झरना --

दो-तीन घर है उसके ऊपर पहाड़ जैसा एक-बड़ा सा पहाड़ है।

कितना प्यारा सा व्यू है जहां पे हम देख रहे है कि यहां पे दूल्हा-दुलहन की --

कितना अ प्यारा बना सकते है अपने टैलेंट के साथ --

मेहनत और लगन के साथ इसे बनाया जा रहा है जो दे अभी से देखने में इतना सुंदर और इतना आकर्षक लग रहा है।

क्रिस्चियन मंदिर दर्शाया गया है।

बहोत ही लगनता के साथ और अपनी दृढ़ता के साथ योगा कर रही जिससे की --

जो यहाँ पे कारे रखी गई है उनमे बहुत सी मोटरसाइकिल भी इसलिए इसे पार्किंग की जगह बोल सकते है।

एक बड़ा सा पेड़ है जो कि जिसकी --

इस इमेज में आप देख सकते है की कितने सारे हिरन के बच्चे --

प्रोडक्ट अच्छा बेचती और काफी लाइटिंग की गई है जिससे कि यहाँ पे कस्टमर और ज्यादा आकर्षित हो स --

इस इमेज में देख सकते है की यहाँ बहोत सारी हरियाली खेती और --

अ गंदिगी भी कुछ ज्यादा है।

आप इस इमेज मे देख सकते है की कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। एक के बाद एक कस्टमर अन्दर जा रहा है और अपनी पेमेंट लेकर बाहर आ रहा है।

जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते है कि यहाँ कस्टमर अपनी बाल कटवा कर --